वीर में मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।

में मुझे कुछ दवाइयां दिख--

यहां मुझे एक पुरुष दिखाई दे रहा--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

इस तस्वीर में मुझे दो स्कूटी दिखा--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

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखा--

इस तस्वीर में मुझे एक न--

फिर मैं मुझे फीमेल जनरल वार्ड दिखाई दे रहा हैं।

तस्वीर में मुझे एक फैक्ट्री दिख--

इस तस्वीर में मुझे एक रोड दिख--

यहां मुझे एक स्कैनर दिखाई दे--

इस तस्वीर में मुझे एक फ्लाय ओवर दिखाई दे रहा--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

तस्वीर में मुझे रंजन हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ कप दिखाई दे रहें हैं।